काफी सारी गाड़ियां पार्क है जिसमे स्कूटी और बाइक शामिल है और भी काफी घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

वहीं उसके पीछे एक और ई-रिक्शा है और एक बाइक पर आदमी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक मैरिज गार्डन के बाहर की है।

यहाँ इस हाल पे काफी सारी लइटिंग्स से डेकोरेशन किया गया है और फूलो का एक गेट भी बनाया गया है एक कार भी खड़ी है जो डेकोरेटेड है और कई लोग यहाँ पे भीड़ लगा के खड़े है।

यहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक गॉव मे बनते हुए घर या बिल्डिंग की है।

यह हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक पोस्ट ऑफिस की है जो ग्रीन कलर से पेंटेड है।

यहां पर बहोत सारे लोग अपने सर पर एक तघाड़ी रखे हुए है जिसके अंदर सीमेंट भरी हुई है और यह नीचे से छत के माले पर सीमेंट--

हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक शॉप की है जिसमे दो शॉप बनी हुई है।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

जहाँ पर एक आदमी दो रिक्शा के साइड में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हुए दिख रहे हैं एक रिक्शा येलो और ग्रीन कलर की है तो वहीं दूसरी ब्लू और ब्लैक कलर की।

--जो की पिच कलर का है जिसका गेट खुला हुआ है यहाँ पर एक आदमी शिप की झाड़ू से झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे रहा है।